थे सामने मुझे स्टेज दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं यहाँ बतकों को देख रहे हैं।

इस इमेज में मुझे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है ऑफिस में बहोत सारे लोग काम कर रहे हैं सभी की डेस्क पर --

रोड के बीच में एक बड़ा सा खम्बा लगा हुआ है। रोड के साइड में कुछ बिल्डिंगें और दुकानें--

इस इमेज में मुझे एक टेबल दिखाई दे रही है| टेबल पर ब्लू कलर का कपड़ा बिछा हुआ है| टेबल के पास कुछ स्टूडेंट चेयर पर बैठे हुए हैं| ये मेडिकल स्टूडेंट लग रहें हैं।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

चौक के बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं | गाड़ियों के किनारे एक बड़ा-सा पेड़ लगा हुआ है।

इस इमेज में मुझे एक ए.टी.एम दिखाई दे रहा है ए.टी.एम के ऊपर बड़ा-सा ब्लू बोर्ड लगा हुआ है।

और बैंक के बाहर की सीढ़ियाँ ब्लैक कलर की है| बैंक के बाहर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई है| बैंक के पास में ए_टी_एम दिखाई --